इमारत के बाहर छ दो पहिया वाहन दिखाए गए है ।

इस मंदिर के बायीं ओर सीढ़ियां जाती दिखाई दे रही है ।

यह छाया-चित्र दिन के समय का है इस छाया-चित्र में एक मंदिर दिखाया गया है।

जिसका रंग काला है व्यामशाला के जमीन का रंग चमकीला भूरा है।